हरियाली दिख रही है पत्थर के गुफा जैसा दिख रहा है।

यहां पर अ शादी का स्टेज दिख रहा है।

यह एक कोचिंग क्लासेस दिखा रहा है जैसे की--

यह एक मेहेल पुराना मेहेल या मंदिर जैसा दिख रहा है।

गुम गुम्बद की डिजाइनस करी हुई है इसकी पास में कॉलोनी जैसा दिख रहा है मकान बने हुए।

उसमें कॉपी किताब जैसा कुछ दिख रहा है बोतल डब्बे दिख रहे हैं चॉकलेट के अंदर अंधेरा है।

दिन डूबते की फोटो है मैच के ग्राउंड में वाइट कलर का सर्किल बना हुआ है।

यह एक अं कॉलेज या स्कूल का प्रोग्राम जैसा कुछ दिख रहा है जहां पर एक आदमी है शादी के जैसा लग रहा है।

वहां पंखा दिख रहा है ऐ_सी लगी हुई है एक लड़का फोटो खीचा रहा है।

यह एक शराब की दुकान दिखाई दे रही है जहां मोटरसाइकल खड़ी है उसके साइड में भी एक दुकान है।

पड़ोस में टंकी है सीरीज लगी हुई दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर साइड में भी लोग खड़े हैं।

मिडिया दिखाई दे रही है दूर पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है।

टेंपो दिखाई दे रहा है एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है फायर सिलेंडर दो--

और रात की फोटो ली हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग उधर खड़े हुए हैं।

साइकल खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कुछ परछाई दिखाई दे रही है।

पेपर से कुछ अ बना रहे हैं मटकी टाइप का एक लड़का ब्लू पेपर काट रहा है फेमीक्विक का ढक्कन दिखाई दे रहा टेबल पे --

पीछे एक टावर दिखाई दे रहा है।

जहां पर अंदर उं दुकान खाली लगी हुई है।

कारोखान की मशीन कारेखान जैसा दिख रहा है।

उम्म और इंजन का जैसा कुछ दिख रहा है जिसको खुला हुआ है नट बोल्ट पड़े हैं।

अ उ नट खोलने वाला पि प्लग भी है एक आदमी खड़ा हुआ है इसके जूते दिखाई दे रहे हैं फर्शी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और इधर भी कुछ पीछे रखा हुआ है डब्बा-डिब्बी जैसे।

ऊपर भी सूरज दिख रहा है।

जिस की मंदिर हो प्राचीन जैसा मंदिर दिख रहा।

पंखे लगे हुए हैं दो आदमी बैठे हुए हैं।

और उधर पीछे कुछ दिख रहा है टाइप का पेड़ पौधे--

और कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है जैसे कि कुछ लोग खड़े हैं।